ऑरेंज कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है बगल में लाल कलर की पट्टी दिखाई दे रही है सामने खिड़की दे रही है गेट खुले दिखाई दे रहे हैं एक एल.ई.डी दिखाई दे रही है।

मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर बहोत ही का दिखाई दे रहा है सामने एक गेट दिखाई दे रहा है गेट लाल कलर का दिखाई दे रहा है।

सामने तीन मुर्तिया रखी दिखाई दे रही हैं सामने एक घर दिखाई दे रहा है थालियों में पानी भरा दिखाई दे रहा है एक आदमी दिखाई दे रहा है।

किनारे पर घर दिखाई दे रहे हैं घर में खिड़कियां दिखाई दे रही हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक मैरिज गार्डन का गेट दिखाई दे रहा है गेट में अ-मुझे हरे कलर का दिखा सामने मेट बिछी दिखाई दे रही है ओर रोयल ब्लू कलर के टेन्ट लगे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक मालगाड़ी दिखाई दे रही है मालगाड़ी ट्रैन पटरी पर चलती हुई दिखाई दे रही है मालागाड़ी लाल-लाल कलर की दिखाई दे रही है।